सामने दीवाल पे देखे तो ब्लैक कलर की एक बड़ी सी शीट लगी हुई है। उस शीट में एक पेड़ और काफी सारी पोस्टर्स भी लगी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक चेयर दिखाई दे रहा है। चेयर के जस्ट बगल में हमें एक ग्रीन कलर का डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है। डस्टबिन के हम थोड़ा सा आगे देखें तो हमे कुछ हरी हरी सी घास भी दिखाई दे रही है।

पिक्चर में हमें एक बड़ा-सा भरा हुआ स्टोर दिखाई दे रहा है। दुकान दिखाई दे रही है इस दुकान‌ में हमें काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है सामने हम देखें तो हमें इसमें काफी सारे बोटल दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक हमें इस कमरे में एक पर्दा लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है और दो खिड़कियाँ भी दिखाई दे रहीं हैं और एक एसी भी --

लड़के के जस्ट बगल में देखें तो हमें एक दीवार भी दिखाई दे रही है जोकि स्काई ब्लू कलर से पुती हुई है और यहाँ पर कुछ सामान भी रखा हुआ है।